आ पे खम्भा दिखाई दे रहा है खम्भे के ऊपर कई तारे तथा ट्रांसफार्मर का डब्बा लगा हुआ है इसके सामने भी एक भवन दिखाई दे रहा है ऊपर खुला नीला आसमान नज़र आ रहा है तथा इसके सामान भी रखा हुआ है।

ऊपर खु खुला आसमान चारो तरफ दिखाई दे रहा है चर्च के पीछे देख सकते है की आपको पेड़ नजर आ रहा है हरा-भरा।

बाउंड्री पर कई प्रकार के पोस्टर लग रखे हैं तथा बाउंड्री के बगल देख सकते हैं सामने की सामने गेट दिखाई दे रहा है काले रंग का अंदर की ओर पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह फोटो में आप देख है कि दो व्यक्ति नज़र आ रहे है सड़क पे जो कि बैग ले रखे है एक व्यक्ति तथा देख सकते है उसके आगे देख सकते है एक बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के दिवार के ऊपर मे दिवार पे एक लोगो लगा हुआ है तथा नीचे आप देख सकते है --

पीछे की साइड देख सकते हैं कि ए.सी. लगे हुई है पर्दे बहुत सारे नज़र आ रहें हैं और बहुत ही सुन्दर य --

खम्बे का लोहा लगा हुआ जो कि काफी शानदार दिखाई दे रहा है।

की इस फोटो के अंदर सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारे इस साइड देख सकते है की पेड़ की बहुत मोटे डाल दिखाई दे रही है तारे दिखाई दे रही है।

इस फोटो के अंदर देख सकते है जैसे कि जिम का बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है सामने की ओर दो मशीने दिखाई दे रही है सफेद कलर की --

इस के अन्दर है और इस के बगल मे नीले और डार्क ब्लू कोट नजर आ रहा है और उसके बगल में भी आप देख सकते है काफी सुन्दर कोट नज़र आ रहा है।

रंग-बिरंगा सतरंगी रंग का आसमान दिखाई दे रहा है बीचो-बीच देख सकते हैं बाउंड्री दिखाई दे रही है लोहे की बगल में भवन के आप देख सकते हैं कि पेड़ नज़र आ रहे हैं भरे-भरे।

मस्जिद के बगल भी कही बड़े-बड़े घर नहीं दिखाई दे रहे है ऊपर एकदम नीला आसमान सफ़ेद बादल कुछ-कुछ दिखाई दे रहे है।

उसके सामने कई महिलायें तथा दूल्हा भी दिखाई दे रहा है दुल्हन भी नजर आ रही है दूल्हा ने अपने ऊपर सेहरा सजा रखा है।

सीढ़ियों के बाउंड्रीओं पे भी लाइटें लगा रखी हैं हरी कलर की काफी लोग खड़े भी हैं अगल-बगल छोटे-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसके आगे सड़क दिखाई दे रही है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं की एक व्यक्ति बूढ़ा तथा उसके बगल में एक जवान व्यक्ति दिखाई दे रहा है उनके आगे एक कार है।

कार का पीछे से सीसा दिखाई दे रहा है हेडलाइट दिखाई दे रहा पीछे वाला तथा पीछे पहियाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके पास एक बाल्टी भी है सफ़ेद कलर की।

यह फोटो के सामने की ओर एक चर्च दिखाई दे रहा है चर्च की सीढ़ियां नजर आ रही हैं चर्च के के एक लाइन से काफी लोग खड़े हैं दोनों साइड तथा बीचों बीच भी --

एक व्यक्ति खड़ा है पादरी है ये सब पादरी हैं ऊपर की ओर माला लटका हुआ है वो भी गेंदे का सभी पादरियों ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं तथा स्कार्फ पहन रखा है पीले रंग का।

इस फोटो के अंदर देख सकते है ऊपर के ओर खुला आसमान चारो और नजर आ रहा है कुछ-कुछ बादल नीले-नीले आसमान दिखाई दे रहे हैं।

पलास्टिक की बोतल का कटोरी है जो कि प उसके अंदर कुस पानी लिक्विड भरा हुआ है उस व्यक्ति ने नीले और सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी है और वह पत्ती तोड़ रहा है।

इस फोटो के अंदर कई सारे बच्चे एक डांस क्लास रूम में डांस सिख रहे है तथा ऊपर आप देख सकते है इ --

आर इन गधो का कलर दिखाई दे रहा है आगे से मुँह सफ़ेद रंग का --

ऊपर साइड आप देख सकते है की रंग रंग-बिरंगा आसमान नजर आ रहा है इन क्रेटो के अंदर मछलियाँ भरी हुई हैं।

यह फोटो के अंदर आप देख सकते है कि सामने की ओर एक बहुत बड़ी दुकान नजर आ रही है दुकान में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे है एक ग्राहक तो एक शॉप कीपर वाला है।